सामने एक बिल्डिंग है जो कि बहुत बड़ी दिखाई दे रही है और इसका रंग भी सफेद है।

क्रीम कलर का है और इसका गेट काले और क्रीम कलर का मजूद है।

नागरिक दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे मेज और कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

मालटा है जबकि दूसरे बोर्ड का रंग काला है और इस बिल्डिंग के सामने मोटरसाइकिल भी खड़े हुए हैं और नागरिक और महिलाएं भी मौजूद हैं।